टी शर्ट रखे हुए हैं।

यह एक सरकारी क्वार्टर हैं।

और जो उसमें ब लपेट के च कुछ दरवाजा बनाने की लकड़ी और चौखट रखा गया है।

यह एक रेडीमेड कपड़े की दुकान है।

कामों के लिए बने हुए हैं और यहाँ पे सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहते हैं।

अंदर का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

और गोल गोल घूमने वाली मशीन लगी हुई है।

इस ढाबे का नाम है बिहारी ढाबा--

लोग फाइल लेके खड़े हैं।

और एक स्टैचू लगा हुआ है।